यह एक खेत है खेत में और यह बना रखी है पानी भरा हुआ है किसान ने एक टीसरट पैर रखी है निचे पैंट पहन राखी है एक लठ इने रोप रो है एक लठ बीने रोप रो है।

नाम लिख रखे है लाल अक्सर से नीचे पट्टी है पट्टी के ऊपर अनुच्छेद धोळे अक्षर में नाम है इन एक और लाइट है नीचे आ के बढ़िया जचा रखा है।

इलो सारो के बीच तार सा लगा रक्खे है एक सोलर प्लेट बीच में हैं दिया उन्होंने दो तीन जानटी भी है इसमें है।

आ बुद्ध जी की मूर्ति है ये पालथी मारे बैठे है एक हाथ पर दूसरा हाथ राखे ऐ उपरियांग --

एम लड्डू है कतली ही नमकीन समोसा कचोरी पड़ी है नीचे अलग रखी है ताकि मक्खी मक्खी आकर ऊपर मल न लाग।

ऐ स्कूटी खड़ी उमे स्कूटी कन एक कार खड़ी है कार की गैलान में स्कूटी खड़ी है स्कूटी के आगे एक मोटरसाइकिल खड़ी है।